जो अपनी क्लॉसेस ले रहें है जिनमें बहुत सारी बातें बताई जाती है। क्या आप किस वर्क को कैसे कर सकते हैं। क्या काम कैसे हो सकता है। किस तरीक़े की चीज़ें मिल सकती है। तो ये एक बड़ी उपलब्धियाँ होती है के इस सेमिनार मे आ कर के --

ये पुष्प की माला है।